कुछ गाय यहां विचरण करती दिखाई दे रही है।

यहां कुछ गाय बैठी भी नजर आ रही हैं।

यहां हरियाली वातावरण दिखाई दे रहा है।

यह एक मस्जिद दिखाई दे रही है मस्जिद के अंदर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है।

यहां पर बैठने के लिए कुर्सियां भी उपलब्ध दिखाई दे रही हैं।

यहां लाल और हरे नीले कलर की बैटरीयां उपलब्ध है।

यहां पर बिजली की भी उचित व्यवस्था दिखाई दे रही --

यहां टेबल कुर्सी भी दिखाई दे रही है यहां इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट --

खाली जगह दिखाई दे रही है यहां एक सीमेंट कल के कलर का --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

यहां इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरी लाइक एयरफोन भी नजर आ रही --

यहां एक सफेद कलर की गाड़ी बोलेरो दिखाई दे रही है।